होते है और इस महाविद्यालय का रंग सफ़ेद है जो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है आप यहां पे अपना एड्मिशन करा सकते --

स्वच्छ बनाये और यहां पे सभी लोग अपनी स्वच्छता के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं।

अपने शहर नगर जिले सभी गावों में जा सकते है और यहां पे बहुत ही --

यह एक डांस क्लास है। इस डांस क्लास का नाम डांस नेशन है।

यहां पे आप किसी भी समय आकर अपना कार्य पूरा करा सकते हैं। आप कभी भी अपना लेन-देन का --

रास्ता के ठीक बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का रंग बहुत ही अच्छा है। इस बिल्डिंग --

जाना जाता है यह मिठाई बहुत ही फेमस है।

यहां एक बैंक है इस बैंक का नाम --

एस.बी.आई. बैंक है यहाँ पे बहुत सारे भीड़ इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे हर समय कस्टमर की अच्छी सुविधा --

यहाँ पे सभी तरह के मिठाईयां मिलती हैं। आप यहाँ किसी भी तरह के मिठाई ले सकते हैं।

आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से की गई है यहाँ की बनावटी और खूबसूरती बहुत ही अच्छी तरह से।

किया गया है यहाँ पे आप अपना शादी के लिए आके आप कभी भी काम कर सकते --